इस तस्वीर में एक कमरे के अंदर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

तीन लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए नजर आ रहे है।

एक औरत के पास डंबल भी रखा हुआ है।

बहोत सारे लोग मस्जिद के बाहर जमा हुए हैं।